प्ले ग्राउन्ड दिखाई दे रहा है जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है पास में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर की दिखाई दे रही है।